यहाँ पे एक बैंक दिखाई दे रही है बैग दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारा सामान रखा--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

यहाँ पे एक मैदान टाइप का दिखाई दे रहा हैं जिसमें इसमें कछुवा भी हम्म खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे रोड भी दिखाई दे--

खजूरें उगी हुई दिखाई दे रही है और बहोत सारे मकान भी दिखाई दे रहे है रोड भी दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

जहां पे चबूतरा टाइप का दिखाई दे रहा है इस में पत्थर लगे हुवे हैं इस में एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है --]

यहाँ पे व्यू दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही हैं।

जहां पे चबूतरा टाइप का दिखाई दे रहा हैइस में पटटहेर लगे हुवे हैं इस में एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है खंबा दिखाई दे रहा है।